जो की नजर आ रहे है और कुछ पाइप्स नजर आ रहे हैं कुछ डब्बे नजर आ रहे हैं मीटर हैं बिजली के--

झाड़ है वो नजर आ रहै है। मल्टी है गेट है वो नजर आ रही है। बाइक्स नजर आ रही है।

बाहर एक झाड़ नजर आ रहा है और टू व्हीलर ही व्हीलर नजर आ रही है आसमान नजर आ रहा है।

तीन ई-रिक्शा है वो नजर आ रही है तीन कुर्सियां हैं वो नजर आ रही है एक बोटल रखी हुई है उसके ऊपर।